यह पीली रंग की मशीन है।

उसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ हैं।

इसके ऊपर ए वन एन_जे_बी पार्लर लिखा हुआ है।

इस दृश्य में हमें लेबर्स नजर आ रहे हैं।

घर के बाहर हमें एक गार्डन भी दिख रहा है।

यह दृश्य हमें किसी मिट्टी के ग्राउंड का नजर आ रहा है।

उसकी ऊपर बिजली की तारें भी लगी हुई है।

इसमें हमें बोहोत सारी टेबल्स एंड चेयर्स --

उनके ऊपर सॉस की बोतलें पड़ी हैं।

इसमें हमें एक आदमी जिसने सफेद रंग की वस्त्र पहनी है।

ग्राउंड की ऊपर हमें बहुत सारी बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं।